मुझे एक टेबल दिखाई दे रही है जिस पे कैची भी रखी हुई है जो काले कलर और लाल कलर में है और मुझे पेन भी दिखाई दे रही है जिस पे कैप लगी हुई है।

टेबल सी दिखाई दे रही है जो काले कलर में दिखाई दे रही है महिला भी है जो बात कर रही है माइक में जो काले कलर का माइक है पीछे पुता भी है जो सफेद कलर में पुताया भी है।

मुझे कुछ लोग दिखाए दे रहा है जो कुर्सियों पे बैठे हुए है कुर्सी है लाल कलर की पीछे कुछ नहीं है।